मूर्तियाँ रखी हुई हैं | टोटल मूर्तियों की गिनती सोलह है |

और कछुवे का सर और पैर दोनों दिखाई दे रहे है कछुवो --

दवाखाना का नाम है राजेंद्र मेडिकल हॉल ।

चारो आधुनिक मशीन है ।